ये दोनों किनारे सफेद रंग की रेलिंग है पुल पर एक साइकिल भी है।

रेस्टोरेंट के दीवार पे एक बोर्ड है जो कि सफेद रंग का है।

क्रॉस का साइन काले रंग का है कमरे की छत करकट का है।

आस पास कई सारे पोस्टर है चर्च में कई सारे व्यक्ति हैं।

इसमें गिटार कीबोर्ड और ढोल जैसे संगीत दिखाई दे रहे हैं।

स्लैब के पीछे कई सारे स्लैब हैं।

छवि मे एक खुला मैदान है प्रवेश द्वार तक जाने वाला रास्ता हरा भरा--

चारों तरफ पेड़ है पेड़ हरे रंग के हैं।

जैसे फूल नारियल और दीपक है।

तस्वीर में एक बड़ा मंच भी है मंच के सामने एक गाय हैं जो सफेद रंग का है।

दुकान की कुछ दीवारे पे बर्तन हैं।

दुकान के दाएं ओर बजाज कंपनी का मिक्सर भी है।

दुकान की सेप सफेद रंग की है।

छवि में कई सारे पेड़ पौधे हैं।

दुकान के बगल में एक ग्रिल भी है जो भूरे रंग का है।

छवि में एक कार है कार का रंग काला है।

यह तस्वीर खुले क्षेत्र का है तस्वीर में एक छोटा मकान है।

मकान की छत सफेद रंग का है जो करकट का है।

चारों तरफ हरियाली है पेड़ पौधे हैं जिसका रंग हरा है।

रैक के अलावा जमीन पर कुछ बड़े बड़े बैग और बॉक्स है।

चारों ओर हरियाली है पेड़ का रंग हरा है।

यह तस्वीर एक खुले क्षेत्र का है।

अंधेरे कमरे के बाहर एक ट्रक है।

भोजनालय के सामने कई सारे वाहने हैं भोजनालय के सामने ये सफेद रंग का बेसिन भी है।

पार्क में झुलुवा भी है पार्क के बगल में एक घर भी है।

यह तस्वीर एक कमरे का है कमरे की दीवारें हरे रंग के हैं।

कमरे के दरवाजे क्रीम रंग के है कमरे में एक टी_वी भी है ।

कमरे की दरवाजा और खिड़कियां लकड़ी की है जो काले रंग की हैं।

यह छवि खुले क्षेत्र का है छवि में एक पेट्रोल पंप है।

यह तस्वीर एक दुकान का है दुकान में विभिन्न प्रकार के उपकरण और सामग्री है।

इसे स्लैप डालने के लिए अस्थाई ढांचे के रूप में उपयोग किया है।

यह तस्वीर एक छोटे से दुकान का है। दुकान के अलमारी में विभिन्न प्रकार के वस्तुएं हैं।

दुकान की दीवारे सफेद रंग की है दुकान पर एक बोर्ड है जो सफेद रंग का है।